एक पंजाब नेशनल बैंक का भी पोस्टर टंगा हुआ है।

नीचे कुछ आदमी सामान खरीद रहे हैं।

इसमें बहुत सारा खिड़कियां भी लगाया हुआ है नीचे एक दरवाजा भी लगाया हुआ है।

और नीचे बहुत सारे ट्रैक भी लगे हुए हैं।

एक बहुत बड़ा पीछे बंगला दिख रहा है मार्बल भी खड़ा करके रखा हुआ है।

एक आदमीन बैठकर तोशक रजाई बना रहे हैं रजाई पर एक डंडा भी रखा हुआ--

यहां पर बहुत सारे मूर्ति भी रखे हुए हैं।

और यहां पूजा भी करते हैं एक थाली भी रखा हुआ है।

यहां पर एक बहुत बड़ा कॉलेज दिख रहा है।

यहां शो हो रहा है जिसमें बहुत सारे आदमी बैठे हुए हैं।

यहां पर पाँच आदमी बोड़े को उठा रहे हैं।

और यहां बहुत सारे बोड़ा भी रखें हुए हैं पीछे पेड़ भी लगाया हुआ है।

और रस्ते में टाइल्स भी लगाया हुआ है।

व्हाइट कलर का पेंट किया गया है एक दरवाजा भी दिख रहा है।

इसका चार खिड़कियां भी दिख रहा है बहुत सारे आदमी भी दिख रहे हैं।

और लड़कियां भी खड़े हुए हैं।

यहां पर एक बहुत बड़ा पत्थल पर एक आदमी बैठा हुआ है उसके--

एक घर दिख रहा है जाने के लिए एक रास्ता भी है।

एक दरवाजा दिख रहा है जिसके अभी उद्घाटन नहीं हुए हुए हैं।

यहां पर बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं और बेंच पर बैठे हुए हैं उसके सामने चार खिड़कियां भी है।

और रूम में वाइट कलर का पेंट किया हुआ है बे--

यहां पर बहुत सारे आदमी खड़े हुए हैं एक आदमी किताब पढ़ रहा है।

और पीछे एक मूर्ति भी बनाया हुआ है।